और नीचे की तरफ शीशे लगे हुए हैं दरवाजे खुला हुआ है दो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं अंदर के तरफ सामान रखा हुआ है लाइटें जल रही हैं।

छोटी एंड इमारत है जिसमें एक दरवाजा खिड़की लगी हुई है और --

मूर्ति है सफ़ेद संगमरमर की और यहाँ तीन मूर्तियाँ हैं ।

यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है सफेद संगमरमर का ऊपर की तरफ दो मूर्तियां --

जिनमें गिट्टियाँ बिखरीं हुई हैं पूल बना हुआ है ऊपर की तरफ तारे निकली गई हुई हैं खंभे लगे हुए हैं।

टॉवर है ऊपर से तार गए हुए है यहाँ पर एक इमारत बनी हुई है जो कि दो मंजिला है ऊपर की तरफ खिड़की लगी है नीचे --

और यहां पर तेल रखा हुआ है जैम रखा हुआ है।

खिड़कियाँ लगी हुई है जिसमे --

यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं खिड़की पर खिड़कीयों पर नीचे की तरफ कार सड़क पर एक कार खड़ी हुई है अंदर की तरफ कुछ व्यत्कि हैं।

और अअ आसमान हरे रंग से यहाँ पर भल --

है रास जाने का रास्ता है पेड़ लगा हुआ है ऊपर तरफ लिखा हुआ है देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली।

जिसमे शटर थोड़ा खुला हुआ है ताला लगा है और --

ऊपर एक झरना है जिसमें से पानी बह रहा है पत्थर है बोहोत सारे यहाँ पर कुछ छोटे पत्थर है बड़े है ।